यह कंस्ट्रक्शन साइट का दृश्य है जिसमें पीछे कई मजदूर काम कर रहे हैं सामने एक लड़का खड़ा है ।

यह दृश्य पार्किंग लॉट का मालूम दिखाई पड़ता है जिसमें कई तरह की गाड़ियां पार्क हुई भी हैं ।

अ टीन शेड भी है और एक छोटी गाड़ी आगे और एक लंबी गाड़ी पीछे--

उसके पीछे एक लंबी गाड़ी एक सफेद बिल्डिंग सबसे पीछे दिखाई पड़ रही है ।

जो नीले रंग का है पीछे ईंटों से बना एक बड़ा सा गोदाम है ।

बहोत बड़ा मैदान है जोकि खाली है।

यह दृश्य दरवाजों की दुकान का है इसमें सामने एक बाइक खड़ी है पीछे एक सफेद स्विच बोर्ड दिख रहा है।

सारे बड़े पेड़ हैं जो कि कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं साइड में पंजाब नेशनल बैंक है ।

रंग की शर्ट वाले आदमी के हाथ में एक थैला है ।

ये दृश्य एक कैफे हाउस जिसका नाम कॉफी है।

इसका फ्रंट खुला हुआ है जिसमें सामने चार आदमी खड़े हैं ।

ये दृश्य होटल का मालूम दिखाई पड़ता है जिसमें सामने एक अ खिड़की है जिस जो पर्दों से आधी ढकी हुई है एक--

सामने एक खाली विरान इमारत है एक आदमी खड़ा उसे देख र-- देख रहा है जिसने एक सफेद कलर की शर्ट पहनी है ।

यह दृश्य एक कपड़ो की दुकानों का है जिसमें फ्रंट में एक काउंटर है।

और एक बोर्ड लग रखा है जिस पर लिखा है वेलकम टू --

इसके सामने दो वाहन खड़े हैं जिसमें से एक स्कूटर है और एक एक्टिव है।

इस चित्र में एक बिलबोर्ड दिखाया गया है जो कि एक सैलो का है सेलोन का नाम क्यूट लुक है ।

यह किसी गंदे मैतान का चित्र दिखाई पड़ता है जिसमें एक कूड़े की ढेरी पड़ी हुई है जिसे एक नीली कलर की--

इसके जस्ट बराबर में एक-- दो शटर हैं जो कि--

दिखाई पड़ते हैं जैसे कि कॉफी मिक्सर ग्राइंडर --

अहं जिसके थोड़े से बगल में चारों ओर--

ये चित्र किसी तालाब का मालूम पड़ता है जिसके--

फिर एक बलेनो और फिर एक सियास--

डिस्प्ले लगा हुआ है जिसे लोग देख रहे हैं ।

इसके पीछे तीन लोग हैं जो डिस्प्ले की तरफ देख रहे हैं।

शादी के एंट्रेंस का मालूम पड़ता है जिसके--

दोनों तरफ एक-एक गाड़ी लगी हुई है ।

यह चित्र डी कैथलोन शोरूम का है जिसमें कई प्रकार के उपकरण रखे हुए हैं ।

और कहीं उपकरण और अहं--

खाने के पदार्थ पड़े हुए हैं जैसे कि--

बिल्डिंग कई शीशे से लैस है और बीच वाली बिल्डिंग में बड़ा सा शीशे का--

यह एक फ्रूट के ठेले का चित्र मालूम पड़ता है जिसमें अन्य प्रकार के फल पड़े हुए हैं जैसे कि केला संतरा--

सेब इत्यादि इसमें नीचे एक--

साइबर कैफे का चित्र मालूम पड़ता है जिसमें सामने एक काउंटर --

इसकी लाइटिंग अहं बहुत ज्यादा रंगबिरंगी है ।

यह किसी कंफेक्शनरी दुकान का अहं चित्र मालूम पड़ता है जिसमें कहीं--

चेयर और टेबल अहं है चेयर टेबल पर अहं ग्लास व जग पड़ा हुआ है ।